यह फोटो एक प्लैग्राउन्ड की फ़ोटो है जहाँ कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कुछ बच्चे जमीन पर थक कर बेठ गए हैं। उन्होंने व्हाइट टी-शर्ट और सर पर कैप लगाई हुई है।

और पुतलों में लड़कियों के कपड़े पहनाए गए हैं और नीचे पन्नियों में भी कपड़े रखे गए हैं।

इस दृश्य मे एक नदी दिखाई दे रही है नदी के सामने कुछ पेड़ लगे हुए है और पेड़ों के पीछे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे एक कॉलेज को दिखाया जा रहा है| कॉलेज के बाहर बहुत सारे गिट्टी पड़ी हुई है और बहुत सारे ईटे पड़े हुए है और दो तीन बाइकस खड़ी हुई दिख रही है ।

और दीवार पर ए_सी लगी हुई है और एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है और सोफे पे उसका हेलमेट लगा हुआ है और कुछ चीजे सजाई गई है।